यहां लोग आते हैं जाते हैं अपना मनोकामना पूरा करके घर पहुंच जाते हैं।

पौधा भी है लोग यहाँ से जा रहे हैं आगे की ओर पुल की ओर जा रहा है।